यहां बहोत ही भीड़ है और बहोत सारे आदमी आए--

बड़ा फील्ड है लंगड़े हैं बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं।

कार लगे हुए है व्यक्ति है वह--

नदी के पास जानवर सब नजर आ रहे हैं ब--

दो-दो बाइक्स रखे हुए हैं बोहोत सारे बाइक्स रखे हुए हैं दो-तीन व्यक्ति खड़े हैं।